जोकी नीला और ऑरेंज कलर से बना हुआ है बिल्डिंग मे व्हाइट और पर्पल कलर का यूज किया गया है साइड मे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

जो हैं इसमे कुछ कॉलेज का पिक्चर दिखाई दे रहा है गेट का एन्टेरेन्स का जिसमे एक नीला कलर का गेट है ।

सामने लिखा हुआ है कुछ शब्द इसमें और साइड मे एक दुकान भी है दुकान के अंदर कुछ सामान भी दिखाई दे रहा है और एक ग्रीन कलर मे जो है। एक क कार्पेट यहां पे बिछाया गया है सामने दो लाल कलर के --

ये जो है ये भी एक बिल्डिंग जो है इसमे बिल्डिंग के अंदर का जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमे अभी कोई बैठा नहीं है खाली है।

ये जो सामने पिक्चर दिखाया जा रहा है इसमे एक जो है एक मॉल का पिक्चर दिखाया जा रहा है या-यानि के शॉपिंग मॉल ओर पीछे जो है बोहोत सारे कपड़ों का डेमो रखा गया है ऊपर मे मॉल मे--

ये जो पिक्चर है इसमे के स्टेशन की पिक्चर दिखाया जा रहा है छवि दिखाया जा रहा है जिसमे जो प्लेटफॉर्म है इसमे अभी कोई शेड लगा नहीं हुआ है।

साइड मे व्हाइट कलर से बॉर्डर बनाया गया है ओर इसमे एक रास्ता भी है साइड मे और बोहोत ही ग्रीन पिक्चर है हरा भरा।

ये जो पिक्चर है ये रात के टाइम पर लिया गया है ओर इसमे जो है एक बड़ा सा शॉपिंग माल दिखाई दे रहा है जिसमे अ बोहोत सारी लाइट से सजाया गया है।

ये जो सामने पिक्चर है इसमे एक क्लिनिक का पिक्चर दिखाई दे रहा है ओर इसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और गेट के सामने भी कुछ लोग हैं।

और रास्ते में भी कुछ लोग यहाँ पे चल रहे हैं साइड पे एक शॉप भी है इसमें और कुछ बाइकस यहाँ पर रखा हुआ है| कुछ ठेले वाला भी है जिसमें कुछ सामान बिक रहा है।

साइड में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और सामने कुछ अ जो हरियाली है उस में ग्राउन्ड में पीछे कुछ ट्रीज यानि की पेड़ - पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक दो कार है व्हाइट कलर का उस के सामने कुछ ट्रक्स भी है और ये पीछे कुछ पेड़-पौधे भी लगाया रखा गया है लगाया पेड़-पौधे है।

पेड़ के नीचे अ कुछ बाइक या साइकिल भी रखा गया है ओर ये जो है इसमें अ बारिश चल रहा है इस टाइम पे अभी और पानी भरा हुआ है इसमें अभी।